ये बहोत बड़े बड़े पेपर्स पर ड्रॉईंग करते हुए--

दे रही है कुछ बेंचेस दिखाई दे रहे हैं।

दे रहा है दीवार पर कुछ--

बड़ी बड़ी खिड़कीयां दिखाई दे रही हैं।

जिसके इधर उधर बहुत सी कुर्सियां--

जिसे ईंटों से बनाया हुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक ज्वेलरी की शॉप दिखाई दे रही है।

यहाँ एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा हैं जहाँ पर बहोत सी काँच की--

विंडोज और दरवाजे दिखाई दे रहे हैं कुछ लाइट्स दिखाई दे रही हैं।

यह एक जिम रूम दिखाई दे रहा हैं जिसमें बहोत से लोग जिम करते हुएं--

सोना चांदी रखा हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ शीशे लगे हुए दिख रहे हैं।

और पीछे बहुत सी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं।

और कुछ लोग दिखाई दे रहें हैं।

यहां एक लड़का दिखाई दे रहा है।